चित्र में बहोत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में ब्लू कलर का स्वेटर भी दिखाई दे रहा है।

तालाब का पानी बहोत साफ दिखाई दे रहा है।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।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

सामने गार्डन जैसा एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

चित्र में सैनिक साइकिल मार्ट का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने दो लोग गाल पे हाथ रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

पहाड़ के इधर एक टावर भी दिखाई दे रहा है।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

सामने समंदर दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के सामने छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

आसमान साफ दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

टेबल के सामने एक कुर्सी भी रखी हुई है।

चित्र में दो डॉक्टर एक कुत्ते का इलाज कर रहे हैं।

दूसरे के गले में स्टेटस कोप हैं।

कुत्ते के टांगों के पास इंजेक्शन रखा हुआ है।

और जमीन पे एक सूखा गिरा हुआ पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

घर के पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

ब्लू कलर का कारपेट भी बिछा हुआ दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे सीटिंग टेबल्स भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक सर्जिकेयर हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है।

सामने दो लोग जाते दिखाई दे रहे हैं।

दीवार पे विभाग लिखा दिखाई दे रहा है।

सामने टाइल्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक लंबी सी बाउंड्री बनी दिखाई दे रही है।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

सामने एक लाल कलर का टावर भी दिखाई दे रहा है।

नो सोलर पैनल लगे हुए हैं।

चित्र में कमल का फूल भी दिखाई दे रहा है।

चित्र में दुकान बंद भी दिखाई दे रहा है।

चित्र में इलेक्ट्रॉनिक दुकान दिखाई दे रही है।

उसने लाल कलर का लहंगा भी पहना हुआ है और ब्लैक कलर का स्कर्टस भी पहना हुआ है।

सामने एक लोहे का पाइप भी दिखाई दे रहा है।

लेटर बॉक्स लाल कलर का दिखाई दे रहा है।

चित्र में एक काली बैग दिखाई दे रही है।

लोहे की गेट भी दिखाई दे रही है।

सामने केक सिटी द लाइव केक शॉप का बोर्ड लगा है।

सामने एक चालू माइक्रोवेव दिखाई दे रहा है।

सामने बहोत सारे डिब्बे दिखाई दे रहे हैं।

चित्र में अंकल ने ब्लू कलर की बैग टांगी है।

सामने टी_वी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

चित्र में बहोत सारे बंबू भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

सामने बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है।

सामने एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

अनेक प्रकार के सामान भी दुकान में रखे हुए हैं।

दो प्रकार के बैलून हैं काले और लाल।